पीर बाबा का समाधी नीचे बनाया गया है। ऊपर गुम्बज है जो हरा कलर से पेंटिंग किया गया है।

बहुत ही सुन्दर नजारा है। भगवान बुद्ध एक पार्क में उनका स्टेच्यु बनाया गया है।

दुकान का तस्वीर है जहाँ पे एक व्यक्ति दुकान का नया नया ओपनिंग --

वो अपना हाँथ ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं। बहुत ही सुन्दर तस्वीर है। इसमें दोस्त मुस्कुरा रहा है।

उनके सहयोगी कार्यकर्ता भी हैं। सबलोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जो फादर कह रहे है सब कोई उनका बात प्रेम से सुन रहा है।

पीछे पेड़ है पानी है तालाब मेवाना है।

यह एक दुकान है जहाँ पे लस्सी मिलता है एक व्यक्ति लस्सी बेच रहा है तंदूरी चाय स्पेशल भी है।

लस्सी भी है। दही भी है। जिसको जो खाना हैं पीना है वह खा सकता है पी सकता है।